ये हमारे जगदलपुर के चित्रकोट का वॉटरफॉल है ये हमारा एंट्री पॉइंट हैं यहाँ से हम वॉटरफॉल के लिए अंदर जाते हैं वहाँ झरना बहुत अच्छे से बहता हैं।

ये एक वाटरपार्क है यहाँ बच्चे आते है और हर तरह के यहाँ पर वाटरपार्क में खेल कूदकर बोहत एन्जॉय करते है यहाँ हर सन्डे को बच्चें का डिमांड रहता है कि हमें वाटरपार्क जाना हैं।

ये न्यू ओपनिंग हुआ है। यहाँ पर इसका अमूल का भांड लगा हुआ है। यहाँ गड़िया खड़ी हुई है। यहाँ लोग आकर अपनी जरुरत की चीजे लेकर जाते है।

और यहा से एलेकटी-- इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है जिससे घरों तक बिजली पहुच पाती हैं और इसलिए इस जगह को पानी को एकत्र करके रखा जाता हैं ताकि जब सूखा एरिया हो वहाँ पर भी इस पानी को पहुचाया जा सके--